ये एक जिम रूम है जिसमे सफ़ेद लाइट और जिम काला से रंग किया गया है और एक आदमी जिम कर--

एक प्रोग्राम हॉल है जिसमे बेंच सब लोहा एलेमुनियम वाला रखाया गया है और कुछ बच्चे इसमें बैठे हुए हैं।

और पंख सब लगा हुआ है और लाईट भी जला हुआ है और इस इस--

ये शहर बहुत ही फेमस है और इस होटल में बहुत ही लोग रहने के लिए में आते हैं।